यहा पर किराने की दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान रखा गया है यहां पर बहुत सारी चीज टंगी हुई है

यह एक गेट है गेट में काले रंग का गेट है जो लोहे का गेट है वो काले रंग का है गेट के ऊपर एक नाव बनी हुई हैं।

यहां पर दो छोटे गेट है और एक बड़ा गेट है यहां पर बहुत अच्छे से सजाया गया है लाइटिंग का यूज़ करा गया हैं।

यह एक ग्राउंड की तस्वीर है जिसमें की बच्चे लोग खेलने आये हुए है यहा पर एक फुटबोल पोस्ट बना हुआ है।

यह एक जिम के बाहर की फोटो है यहां पर हमें दिख रहा है कि यहां पर बहुत सारी साइकिल रखी हुई हैं।

यह होटल हरे रंग कलर का है। इसके बाहर बहोत सारी गिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर एक किचन भी है।

यह एक गार्डन की तस्वीर है जिसमें घास लगी हुई है यहॉं पर घास को बोहोत मेंनटेन करके रखा गया है।

यह एक काले कलर का गेट बना हुआ है यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर एक झाड़ लगा हुआ है।

यह एक मेंकैनिकल की लैब है यहाँ पर बहुत सारी मशीने रखी हुई है जैसे की जनरेटर रखा हुआ है।